पीछे वाली लड़की जो वो हाथ में भला रखी हुई है।

ट्रेन पकड़ने के लिए यहां पड़ सभी आदमी के पास--

इस फोटो में क्या है तो इस फोटो में एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

औड़ यहां पर औड़ बहोत सारे कपड़े हैं आप लोग आइए यहां पर कपड़े खड़िदीये ।

यहां पर एक और चिड़िया है जो कि बहोत ही अलग तरह का है इन सब से--

यहां पर लड़का और लड़की दोनों ही आकर जिम कर सकते हैं।

और यहां पर दो आदमी सामान ले जा रहे हैं अपने सर पर रखके।